और यहाँ पे वो एक लाईट जल रही है जो की सफ़ेद रंग की है समाने पूजा की थाली रखी हुई है निचे फर्श दिखाय दे रहा है जो की काले और लाल रंग का है और बगल में --

उसके बगल में एक महिला खड़ी हुई है सामने एक व्यक्ति है जिस की गोद में एक छोटा सा बच्चा देखा जा सकता है अगल बगल में बहोत सारी पोस्टरे लगी हुई है।

बहोत सारे लड़को ने टोपी पहन रखी है इनके सामने बहोत सारी लड़कियां बैठी हुई हैं सभी के सामने कुछ डेस्क लगाया गया है इनके दूसरी तरफ सामने एक हाफी जी बेठे हैं साफ़ देखे जा सकते है नीचे टाइल्स लगी हुई हैं ।

यहाँ पर एक व्यक्ति दिखाई दे रहा है जो की एक चेयर के ऊपर बेठा हुआ है और उसके निचे एक टाइल्स लगी हुई है जो की लाल रंग की है और अगल बगल में बहुत सी बिल्डिंगे देखि जा सकती है।

कोई डिग्री या कोई मान्यता प्राप्त हुई है ऊपर चढ़ने के लिए सीढ़ियां बनाई गयी है और पीछे कुछ अ- टीचरों को खड़ा देखा जा सकते है इसकी दूसरी तरफ कुछ महिलाएं भी दिखाई दे रही है।